एक लोहे का गेट लगा हुआ है रास्ता है टिन का शैड डला हुआ हैं।

एक दुकान है वहां पे रैक लगे हुए है कपड़ो के खड्डे हैं टेबल रखा हुआ है तस्वीरे बनी हुई है।

एक प्लाइंट है वहाँ पे ढेर सारे पौधे रखे हुए हैं।